केवाड़ के पर्दे हुए है और फुगे बुग्गे सब लगे हुए हैं मूर्ति समझ में ऐसे आ रही है कि किरचक की है।

इसके पहले और सामने एक कुर्सी भी दिख रही है लेकिन यहां एक में आद औरत भी दिख रही है पूजा करती हुई यहां समझ में ऐसा आ रहा।

इधर पार्किंग समझ में आ रही है गाड़ी तो बहोत खड़ी हुई हैं।

कि पानी समझ में ऐसा आ रहा कि काला काला समझ में पानी आ रहा है।

किधर ग्राउंड है ग्राउंड में सजावट हुई है ऊपर सफेद कलर का लगा हुआ है नीचे हर कलर के रख--

जैसा कि मैं देख रहा हूं रोड दिख रही है बाजू पे।

मकान के अंदर एक मंदिर बहोत अच्छी सी बनी हुई है।

लोग के अलावा कोई नहीं है और ऐसा लग रहा है कि गाय की पूजा इधर हो रही है।

जैसे कि मैं देख रहा हूं कि बहोत बड़ा ग्राउंड है इधर--

खिड़की कुछ टेबिल जैसे कांच में दिख रहे हैं बिकने के साथ दुकान में एक हॉल है।

इसमें तो ताल बहुत अच्छा आता हैं गाने का और बजाते-बजाते आदमी जो हीरो हो जाता हैं इधर जैसे हो गए हमारे गोविंदा ।